यह एक पार्क है जिसमें की पानी भरा हुआ है।

यहां पे डमी उम्मी बहुत सारा मशीन है।

ए_सी भी लगा हुआ है यहा पे और बहोत सारे जो है लाइट का कनेक्शन जा रही है छत के ऊपर से--

यह एक मंदिर है जो की बहुत अच्छा बना हुआ है और पीला कलर का ये बना हुआ है ग्रीन कलर का भी और नीचे का हिस्सा ब्लैक कलर का ओ --